ये एक पेंडॉल है पेंडॉल पे एक लाइटिंग लगी हुई है हरी पीली नीली कलर की रिबिन से सजा हुआ है।

एक सिस्टर है जोकि इनका काम देख रही है ये बेंच पर काम कर रही है कुछ चेयर नज़र आ रही है कुंडी नज़र आ रही हैसाइड में --

ये एक ग्रीन कलर की बिल्डिंग है जहाँ पे एक ब्रांच है स्टेट बेंक ऑफ़ इंडिया का जहाँ पे कुछ लोग जाते-आते नजर आ रहे हैं बहुत सारे पोस्टर्स नजर आ रहे हैं एक --

ऑटो नजर आ रहा है ब्लैक कलर का आस-पास बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही --

और कुछ वायर्स ऊपर से जाते हुए नजर आ रहे हैं पोल पे कुछ लोगो के पैर नजर आ रहे हैं यहाँ प्लेटफार्म में --

ये एक रेलवे ट्रैक है जो की अभी खाली नजर आ रहा है प्लेटफार्म नजर आ रही है जहाँ पे कुछ बैठने की भी जगह है कु --

ये एक रेलवे ट्रैक है जहाँ पर कुछ लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है वाइट कलर की एक आदमी का हाथ नजर आ रहाहै

जो की नीली और व्हाइट कलर की है एक कार नजर आ रही है सामने में रखी जो की व्हाइट कलर की है इसका गेट कांच का है एक दुकान नजर आ रही है एक कोकोकोला --

मेला वेला लगल है लाल कुर्सी है इधर पोस्टर लगल है मिकी माउस लगल हा इधर आदमी हाए